यह एक पूल का दृश्य है।

पुल के बगल में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

रूम में टाइल्स भी लगाया गया है और रूम में बहुत सारा आदबीन भी हैं।

बिल्डिंग में रेलिंग भी बनाया गया है और बिल्डिंग में बहुत सारा शीशा भी लगाया गया है।

बाहर में बहुत सारा गाड़ी भी दिखाई दे रहा--

जमीन में बहुत सारा हरा हरा घास भी दिखाई दे रहा है और यहां पे बाउंड्री भी मारा गया है।

यहां पे पटरी भी बनाया गया है और यहां पे टाइल्स भी लगाया गया है।

बिल्डिंग के नीचे बहुत सारा दुकान भी बनाया गया है।

यह एक कपड़ा दुकान का रूम है।

रूम में बहुत सारा लाइट लगाया गया है और रूम में पंखा भी लगाया गया है।

यहां पे रूम में बहोत सारा गाड़ी भी है।

रूम में बहोत सारा आदमीन भी दिखाई दे रहे हैं।